ज्यादातर टोपी लगाए हुए हैं और वो नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं ऊपर की तरफ कुछ लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही है।

छपोरा लिखा हुआ है और नीचे एंड इंग्लिश हिंदी मीडियम लिखा है।

सामने की तरफ सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर एक गाड़ी जा रही है पीछे की तरफ एक बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है बिल्डिंग के बाहर एक गेट बना है उसकी बाउंड्री भी बनी हुई है।

इसमें सामने की तरफ सब्जी रखी हुई है अलग-अलग तरह की सब्जी रखी हुई है जैसे भिंडी शिमला मिर्च गाजर--